सामने एक मंदिर दिखाई दे रहा है। मंदिर बहुत ही बड़ा दिखाई दे रहा है। मंदिर पर बहुत सारी चोटियां दिखाई दे रही हैं। चोटियों पर झंडे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

रही है यहां पर बिजली की पोल भी दिखाई --